मेरे सामने अ एक होंडा का शोरूम है काफी बड़ा जिसके ब शोरूम के बाहर अ एक्टिवा और सेकंड हैंड एक्टिवा खड़ी हुई है।

मेरे सामने काफी बड़ा खेत है और खेत में काफी हरियाली छाई हुई है काफी बड़े-बड़े पौधे उगे हुए हैं।

अ और ब्रश भीं वहाँ पे दिखाई दे रहें हैं साबुन भीं हैं शॅम्पू भीं अ वहाँ पे दिखाई दे रहा हैं।

मेरे सामने एक रोड है रोड के सामने एक टाटा मोटर सर्विस है और उसके बाहर एक कार खड़ी है और उसके बाहर--